यह एक फुल की शॉप है जो की बहुत बड़ी शॉप है यहां पे तीन वर्कर है इसमें एक फूल सेल कर रहा है जिसने ब्लैक शर्ट --

और यहा पे और दूसरी दुकाने भी है बगल में।

यह एक फुटबॉल ग्राउड़ है और यहा पर बच्चे फुटबॉल खेल रहे है जिनमे से दो बच्चे ग्रीन टीशर्ट पहन रखी है और--

यह एक रोड है यहा पर बहुत सार बहुत ट्राफिक है यहा पर दो ओटो है यहा पर एक कार का कलर ब्लाक है यहा पर और एक कार है जिस --

यह एक ग्राउड़ है यहा पे दो लड़के क्रिकेट खेल रहे है जिसमे एक बंदा बैटिंग कर रहा है और एक बॉलिंग कर रहा है दोनों ने ब्लू टीशर्ट--

यहाँ पे बाइके भि हैचोटिया भी है यहा पे एक लड़का हैजिसकी शर्ट का कलर केलो है और यहाँ पे बहुत से लोग है।

किस की सेल्लिंग कर रहे है और यहा काफी दुकाने है जोकि मौसम्बी की है और यहा पे एक अंकल चल के आ रहे है और यहा पे बहुत सी चीज़े मिल रही है और यहाँ पे सारे फल फ्रूट अबेबल है।

इसमें लाइटिंग भी है और इस में बॉउंड्री में ग्रे कलर हो रहा है और यहाँ पे बहुत से लोग है जो की नमाज पढ़ रहे हैं।

यहां पे दो बैंक है और यहा पे बहुत बड़ा रोड है यहा पे बाइक ब से होते है यहा पे जनरेटर रखा है और यहा पे दीवाल की बाउंड्री भि हो रही हैऔर यहा पे --

बैग टांग के रखा है यहा पे जालीया भी है और यहाँ पे एक लड़का है जिसने पर्पल टी- शर्ट पेहेन के रखी है।

ग्रीन और लाइट ग्रीन है और यहाँ पे बहुत सारी शोपे भि है और यहाँ पे एक बस खड़ी है जिस का कलर ग्रीन और वाइट भी है।

पीछे पूरा बादल भि दिख रहे है आसमान दिख रहा है यहा पर बहुत सारे पेड़ भि है और ये बिल्डिंग में बहोत सारे ग्लासेस भी लग रहे है ।

यहाँ पे एक ऑटो है जो की मॉडिफाई है और यह ये ओटो ग्रीन और येलो और ब्लैक कलर का है और ये ऑटो के आजु बाजु कुछ नहीं है और पीछे एक घर है जो की छोटा सा है।